इस फोटो में एक बड़ा रैक दिख रहा है रैक पे बहोत सारे बर्तन रखे हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक हॉल नजर आ रही है हॉल का कलर ब्लू और व्हाइट है।

बाहर बोर्ड पे जैसवाल हार्डवेयर लिखा हुआ दिख रहा है और बाहर सामान भी रखे हुए दिख रहे हैं।

सामने एक पोस्टर लिखा हुआ दिख रहा है जिस पर ए_के फिटनेस जिम सेलिब्रेशन लिखा हुआ दिख रहा है और उसपे फोटो बना हुआ दिख रहा है।

सामने एक मिरर दिख रहा है उसके बगल में गीजर दिख रहा है और एक कपड़ा टंगा हुआ नजर आ रहा है।

तार भी बंधे हुए दिख रहे हैं पीछे लाइट लगा हुआ दिख रहा है और एक लाल कलर का झंडा भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक आदमी नजर आ रहा है उसके पीछे एक मिरर नजर आ रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं पीछे लकड़ी रखी हुई दिख रही है।

चूल्हों का कलर व्हाइट है उसके बगल में तीन बड़े बड़े कार्टून रखे हुए हैं।

रुम पूरा सजा हुआ नजर आ रहा है सामने एक आदमी मंच पर कुछ स्पीच देते हुए नजर आ रहा है।

बस के ऊपर एक स्टार भी बना हुआ दिख रहा है बस के पीछे एक आदमी एक लड़का दिख रहा है और एक बाइक भी लगा हुआ दिख रहा है।

गोभी पत्त गोभी आलू प्याज लहसुन अमरुद और बहुत सारे सब्जियां दिख रही हैं।

बाहर कुर्सी टेबल सामान रखे हुए दिख रहे हैं।

घर के बाहर गेट लगा हुआ दिख रहा है और उसके नीचे सीढ़ी लगा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में एक दुकान दिख रहा है दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड टंगा हुआ दिख रहा है।

एक बगल में बिल्डिंग दिख रहा है उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है।

इस फोटो मे एक अण्डा दुकान दिख रहा है बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है।

कुर्सियां पे एक हेलमेट रखा हुआ दिख रहा है।

इस फोटो में एक दुकान दिख रहा है दुकान का कलर नीला है।

पीछे एक बड़ा टावर और एक बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

डब्बे का कलर ऑरेंज है उसके बगल में एक चेयर टाइप दिख रहा है।

इसके ऊपर सामान रखे हुए दिख रहे हैं एक मिरर भी नजर आ रहा है।

कार के दोनों गेट खुले हुए दिख रहे हैं कार के आगे नंबर प्लेट लगा हुआ नहीं दिख रहा है।